जैसा कि मैं देख रही हूं कि दिन का समय हो रहा है और आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है।

जैसा कि मैं देख रही हूं कि यहां पर एक हवाई जहाज नजर आ रहा है।

गोवा इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनजमेंट लिखा हुआ है और यहा एक लोगो भी बनाया गया है।

जैसा कि मैं देख रही हूं कि दिन का समय हो रखा है आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है।

जैसा कि मैं देख रही हूं कि यहां पर दिन का समय हो रखा है आसमान बिल्कुल नीला नजर आ रहा है --

जिसके ऊपर बिजली के तार भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर एक केले का पेड़ भी नजर आ रहा है और यहां जमीन पर --

यहाँ पे कुछ तार भी दिखाई दे रहे है कुछ पेड़ भी नजर आ रहे है और यहाँ पे एक पत्थर के ऊपर नकासी की गई है।

पेड़ भी दिखाई दे रहा है एक पीले रंग की इमारत भी दिखाई दे रही है रोड पर एक सफेद रंग की कार भी नजर आ रही है।

और यहा पे निचे एक दुकान नजर आ रही है जिसके बगल में एक एल जी का पोस्टर भी लगा हुआ है और ऊपर एक ऐ सी की तस --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

जैसा कि मैं देख रही हूं कि दिन का समय हो रखा है यहां पर कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं और एक सफेद रंग --

का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है यहां पर बड़े-बड़े चट्टान भी दिखाई दे रहे हैं चट्टान के नीचे कुछ आदमी भी --

जैसा की मै देख रही हू की दिन का समय हो रखा है यहा पे एक पेड़ नजर आ रहा है पेड़ के तने को लाल और स --

फव्वारे के ऊपर कुछ घास भी नजर आ रही है और यह पत्थर का नजर आ रहा है निचे जमीन पर घास भी दिखा --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

जो कि नारंगी रंग से लिखा हुआ है और बोर्ड में एक कैची भी नजर आ रही है यहां पे एक कांच का दरवाजा --

ईसके नीचे कई ज्यादा भीड़ लगी हुई है जिसमे से एक आदमी कुर्ता पैजामा पेहना हुआ है और उसने सफ़ेद रंग की टोपी भी लगा र --

जैसा कि मैं देख रही हूं कि दिन का समय हो रखा है और यहां पर एक सफेद रंग की इमारत नजर आ रही है ।

के नीचे एक पत्थर की भी नजर आ रही है और यहां पर एक सफेद रंग का बोर्ड भी लगा हुआ है ।

नीचे कुछ फल और सब्जियां नजर आ रही हैं और यहां पर एक लाल और पीले रंग का चादर भी दिखाई दे रहा है ।

जैसा कि मैं देख रही हूं कि यहां पर एक दुकान दिखाई दे रहा है जिसमें ढेर सारा सामान रखा हुआ है ।

यहाँ पे कुछ बड़ी बिल्डिंगे भी नजर आ रही है और यहाँ बिच में खुदाई का काम चल रहा है जिस में एक जे.सी.बी भी दिखाई दे रही है।

जैसा कि मैं देख रही हूं कि दिन का समय हो रखा है आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है यहां --

जहाज सफेद रंग का है और उसके ऊपर तीन सितारे बने हुए हैं यहां पर एक नीले रंग का खंबा भी दिखाई दे रहा ।

और यहां पे एक मंडप बनाया गया है जिसके ऊपर फूलों से सजावट की गई है फूल में पीले सफेद और हरे ।

जिसके सामने एक जे.सी.बी भी दिखाई दे रही है और यहाँ पे एक काले रंग की टंकी भी दिखाई दे रही है और ढेर सारे सोलर --

मशीने भी रखी हुई हैं मशीनों पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है इसमें मशीन के बारे में लिखा हुआ है ।